इस चौक से लोग पाग घूम के अपने-अपने घर जाते हैं ये चौक बहुत प्रसिद्ध है।

पूरे सवारी को उतारती है ये पुराना बस स्टैंड बोलते है इसे औ र- र-र बस स्टैंड यहाँ से चार किलोमीटर अंदर चले गया हैं।

दूध दही गन्ने का रस से भग महात्मा काल को नहलाते हैं उनकी सेवा करते हैं।